और यहां पर एक सड़क में बड़ी सी थ्रेसर मशीन लगी हुई दिख रही है।

और सामने एक बिल्डिंग है।

स्विच बोर्ड लगे हुए नजर आ रहे हैं।

और कुछ सूटों को बाहर लटकाया गया है।

इस चित्र में एक छोटी सी दुकान नजर आ रही हैं।

सामने दो तीन व्यक्ति काम करते दिख रहे हैं।

सामने एक बड़ा सा लोहे का गेट लगा हुआ है।

एक छोटा लाल रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

सामने कुछ टेडी बेयर कुछ बार्बी डॉल्स और कुछ बॉल्स रखी हुई नजर आ रही हैं।

एक युक्ति कान में हेडफोन लगाए गाने सुनती नजर आ रही है।

खिले हुए नज़र आ रहे हैं।

हॉल के बाहर बहोत सारी युवतियां और व्यक्ति खड़े नजर आ रहे है।

इस चित्र में एक गाड़ी का शोरूम नजर आ रहा है।